वह बहोत ही अच्छे तरीके से जो आना जाना कर रहे हैं।

यह मैदान बहोत ही साफ सफाई के लिए यहां पर लाइटिंग की व्यवस्था है।

और छोटे बड़े सभी प्रकार के पेड़ पौधे है।

यहाँ नवकार ज्वैलर्स है जहां पर हम देख पा रहे हैं।

यहां एक ईट्स एंड डांस ये सोसायटी है।

व किसी भी प्रकार के कस्टमर या यात्रियों या मेला घूमने वालों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है।

यह एक स्टेशनरी यहां पे बच्चों का सामान रखा गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं।

हाँ यहाँ पे व्हाइट कलर का पुताई किया गया है दीवालों पे --

और पांच से अधिक ऑटो खड़े हुए हैं।

जैसे कि हम देख पा रहे हैं।

यह एक मार्केट बहोत अच्छा सा--

व यहाॅं पे कुछ ही इसी प्रकार का कार्यक्रम हैं।

यहां पे एक पुलिस कर्मचारी भी है जो को लोगों का चालान काटने का कार्य किया जा रहा है।

और इनका जीवन यापन चल रहा है।

यहां पर एक ऊपर पे पेटीएम का स्कैनर भी लगा हुआ है।

और यहां पे लोगों का आवागमन ज्यादा है।

और बहोत अच्छे से साफ सफाई का ध्यान दिया गया है।

यहां पे बहोत से लोग अपना सामान लेने के लिए आए हुए हैं।

वह पीछे अपना छोटा सा रहने का घर बनाया हुआ है जोकि खेत के देख रेख के लिए काम आता है।

वह यहाँ पे बहुत ही अच्छा साफ -सफाई से खेती बाड़ी किया जा रहा हैं।

वह बहोत अच्छे से सफ़ाई कर रहा है तथा-- -

व यहां पे सभी बसों में हरे कलर का रंगाई किया गया है।